बाहर वो हॉल के सामने भी बहुत बड़े बड़े झाड़ है।

वहाँ पे ए.टी.एम. के दरवाजे पर टोल फ्री नंबर लिखा है बैंक का --

यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हुई है वो लड़कियाँ कुछ ड्राइंग कर का काम कर रही है वहाँ एक टीचर खड़ी है उनको देख रही है।

यह एक बहुत बड़ी बस है उस बस के ऊपर विठाई लिखा हुआ है।

उस हॉस्पिटल के ऊपर नाम लिखा हुआ है गेट वेल हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टिट्यूट उस हॉस्पिटल का दरवाजा कांच का है उसके ऊपर भी बोर्ड चिपका हुआ है।

लेने का पाने का है बाजुमें और बाजुमें टिफ़िन रखे है।

लेडीज सर के ऊपर बांध के रखी है रुमाल और नीले कलर का जैकेट पहनी है और खराटे से कचरा जमा कर रही है।